बाहर दो पैया वाहन खडे दिखाई दे रहे है साइड में एक मकान दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर दो पय्या वाहन मोटरसाइकले दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ी सी कपड़ो की दुकानो का चित्र दिखाई दे रहा है यह बच्चो के महिला के व्यक्तियो के कपडे दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक खेल के मैदान का चित्र है जहा यूवक दिखाई दे रहे है वृक्ष दिखाई दे रहे है।

ये एक दो पय्या वाहन गाड़ीयो का शोरूम दिखाई दे रहा है।